कांच मैं अपने आप को देख के स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं।

यह एक कार वॉशिंग सेंटर है यहां टायरों को कार को धोया जाता है और--

लोग यहां कुछ पूजा पाठ के जरिए आए हैं।

यहां पानी है जंगल में हरियालियां है पेड़ पौधे हैं।

कुछ टूट जाता है फूट जाता है तो बनाया जाता है ये दो आदमी इस कार को निकाल कर बना रहे है ब्राउन कलर की कार है और ब्लैक कार खड़ी भी है।

और यहां बड़े बड़े पत्थरों की इमारत है।

यहा कंप्यूटर के जरिए नेट का कुछ पता लगाते हैं।

यह एक ऑफिस एरिया हैं ये न्यू ऑफिस एरिया हैं यहां लोग लैपटॉप रख के वर्क करते हैं।

ये ऑफिस है और यहां पर बहुत सारे वर्कर काम करते हैं।

ये बहोत बड़ा प्ले ग्राउंड है यहाँ लोग कबड्डी खेलते है फुटबॉल खेलते है क्रिकेट खेलते है और लोग बड़े-बड़े रुक के यहाँ बैठ के देखते भी है।

इतनी अच्छी अच्छी हरि हरि ताजी ताजी सब्जियां मिलती हैं मंडियों में।

और कोई पढ़ाई भी कर रहा था ए_सी लगी हुई है पर्दा टंगा हुआ है।